सामने सीमेंट से बनी एक दीवार और उसमें एक टाक दिख रहा है।

जहाँ बाहर की ओर कुछ वाहन दिख रहे हैं। सड़क दिख रही है कुछ व्यक्ति दिख रहे हैं।

ये चित्र किसी दुकान का दिख रहा है जिसमें एक व्यक्ति कुर्सी पर बैठा है। एक व्यक्ति उसके --

आस पास दीवारे दिख रही हैं रंगीन।